सामने बैलूंस लगे हैं येलो व्हाइट कलर येलो ब्लैक कलर के।

एक ब्लैक व्हाइट कलर का एक जानवर के घूम रहा है।

जिस पे दो कार्स खड़ी हुई है काफी सारी कार्स हैं।

यहां पे काफी सारे एक बोर्ड लगा हुआ है वहां पर दो पोस्टर लगे हुए हैं।